एक लड़का है जो कि आपका ये देखभाल कर रहा है।

बार्गेनिंग वगैरा सारे अच्छी हो रहे है और अच्छाअअ खासा माहोल बना हुआ है।

लगा हुआ है रोड किनारे बहोत सारे कार लगे हुए हैं कुछ ब्लैक है कुछ वाइट है।

ट्रेन उधर से आ रही है जो हरे रंग की है।